और यहाँ पर कुछ दरख्त हैं कुछ लोग हैं और यहाँ पर कुछ मकानें भी हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक काँच पर रेस्टोरेंट बार भी प्लेस लिखा हुआ है।

वह्ह एक झूमर भी लगा हुआ है।

बहुत सारे और यहाँ पर अंदर दो फ्रिज भी बनी हुई है।

यहाँ पर एक मैजिक है जिसमे दो लोग बैठे हुए हैं।

कैमरा भी लगा हुआ है और एक डेस्टबिन भी है।

एक सफेद कलर का बोर्ड है और एक चॉकलेटी कलर का टेबर है।

और एक तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर--

और गुलदस्ते है और यहाँ सोफे भी हैं बैठने के लिए चॉकलेटी कलर के--

इस क्लास में ए_सी भी और फंखा भी लगा हुआ है और बल्ब भी लगा हुआ है।

एक फ्रिज है जिसके ऊपर कप रखे हुए हैं और यहाँ पर--

एक झोपड़ी बनी हुई है टूटी-फूटी--

बाक्स है जिसका कलर काला और लाल है।

इस मैदान में चार कुत्ते हैं और हरी-हरी घासें हैं।

और यहाँ पर कुछ कपड़े सुखने के लिए टँगे हुए हैं।

इस तरफ नीम गुफा में एक आदमी सुरंग में जा रहा है।